पीछे साइड दीवाल में टी.वी. चल रही है हैंगर्स हैं जिसमें बहुत सारे कपड़े टँगे हुए हैं एक टेबल है इसपे एक व्हाइट कलर दीवाल है लाइटे लगी हुई --

उसके बाजू में पेड़ पौधे लगे हुए साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे खुला आसमान है रोड दिखाई दे रहा है। एक --

में हमें तोता दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तोता रखें तोतों का कलर हला है वो पिंजड़े में कैद है।

चित्र में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जो की पूरा खाली है एक व्यक्ति खड़ा हुआ एक कुत्ता दो कुत दो-तीन कुत्ते बैठे हुए हैं एक दुकान है पीछे साइड ।